यहां एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा है जहां इसके ऊपर गोल्ड कलर पेंट किया हुआ है।

गेट के आस-पास दो औरतों की पिक्चर बने हुए हैं। रोड के ऊपर से बहोत सारे वाहन गुजर रहे हैं। कुछ साइकिल सवार व्यक्ति तथा कुछ बाइक सवार व्यक्ति जा रहे हैं। किनारे पे शॉप्स लगी हुई हैं।

यह एक फैक्ट्री है जहाँ ग्राउंड फ्लोर पर बहोत सारे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं। इनमें से कुछ ने हेलमेट पहना हुआ है तथा आस-पास बोरे रखे हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर व्यक्ति खड़े हैं।

तथा एक कांटा लगा हुआ है जिससे एक बोरे को लटकाया गया है।

यह एक बोज कार सर्विस सेण्टर है जहां बाहर के तरफ बहुत सारे व्यक्ति खड़े है बगल में एक कार है और सभी अपना फोटो क्लिक करवा रहे है।

लाइट लगी हुई है फूल मालाओ से डेकोरेशन किया गया है स्टेज के सामने चैयर पर बहोत सारे व्यक्ति बैठे है।